प्लेट दिखाई दे रहा है जिसमें बिरयानी है इसमें चिकन भी है साइड मे कटोरी है कटोरी में दाल है चम्मच है धन्य--

क्रेन दिखाई दे रही है बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

सामने काफी बिल्डिंगे काफी इंडस्ट्रीज दिखाई दे रही है हर बिल बहुत सारी बिडलिंगो का काम चालू है बिल्डिंग आधी अधूरी बनी हुई है धन्यवाद।

--काफी दूर-दूर तक फैले हुए है।

पेड़ दिखाई दे रहे है ए बोहोत सारे ए ए ल इंसान दिखाई दे रहे है।

क फिर हरे गाड़ियां दिखाई दे रही हैं तीन बाइक है अ ऊपर एक बैनर लगा हुआ है मछली दुकान ली जिस पे नाम लिखा--

सामने एक पर लड़की खडी है वो खड़े हो के हाथ में कुछ पकड़े हुए है धन्य--